और इनमे से बहुत गंदी स्मेल आती है छी मेरे को नहीं पसंद बिलकुल भी।

इसे देख के तो मेरा भी मन कर रहा है बस जल्दी से मेरे मुंह में आ जाए ये खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा है।

यहाँ से हमें बहुत सी सुविधा मिलती है फोन की तरह --

इसको डर नहीं लग रहा मुझको तो बहुत डर लगता है इतनी ऊँचाई पर बैठना या खड़े होना लेकिन ये व्यू बोहोत सुंदर लग रहा --

यह एक लेडी है जो अपने सितार से लोगों को सितार बजाना सिखा रही है और सुर मिलाना गीत गाना।

ये ठेले पर ऐसे ही रखे हुए हैं इन पर मक्खियां बैठती हैं बहुत गंदे तरीके से रख रखे हैं।

एंड यहां पर मुस्लिम लोग ही आते हैं जो अपनी हर फ्राइडे नमा --

यह एक ट्रेनर है ।

एंड बोहोत ही इंडिया से तो बोहोत ही ज्यादा चेंज फूड लग रहा है ये तो एंड स्पून एंड फॉर्क से खाने वाला।